आसपास कई सारे कपड़े मे टंगाया हु--

सामने में कई सारे स्टॉल भी हैं।

इस तस्वीर में एक बड़ा सा मैदान दिखाई दे रहा है।

इतने सारे हेयर ड्रायर भी हैं।

इस तस्वीर मे मुझे बहौत सारे आदमी दिखाई दे रहे है।

सामने में कई सारे साड़िया भी टंगाया हुआ है।

ये सारे पर्दे बिठाया हुआ है।

इस तस्वीर में दो ऑटो रिक्शा दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक फेंसिंग दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक बड़ा सा नदी दिखाई दे रहा है।

दीवार पर एक टी_वी --

ये सारा वैन दिख रहा है।

पास कई सारे लोग भी दिख रहा है।

सामने मे एक दिखाई दे रहा है।

अंदर कैसा है कुर्सियां और--

बहुत सारे पंखे और लाइट बल्ब भी लगाया हुआ--

पास में एक आदमी का मुंडा भी दिख रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक बड़ा सा मंदिर दिखाई दे रहा है।

खिड़कियां और दरवाजा भी दिखाई दे रहा है।

सामने में एक मैदान भी है।

सारे फूल के गमले में रख--

टेबल पर कई सारे टिशू पेपर भी रखा हुआ --

आस पास कई सारे पेड़ पौधे हैं।